कुकी आ बैठने की व्यवस्था भी है और--

यहां दूल्हा दुल्हन का इंतजार किया जा रहा है।

बहता हुआ तालाब छोटी छोटी चट्टानें जहां पर बैठकर सुकून की बातें की जा सकती है।

बुनियाद मजबूत बनाई जा रही है ताकि घर--

यहां पर कोऑर्डिनेटर बैठकर देख रही है बच्चे सुंदर सुंदर चीजें बना रहे हैं।

यहां पर सब अपने पूजा आकर करते हैं और भगवान का--

यहां लोग किसी की शादी क्य शहनाई बजा रहे हैं।

जहां बहोत ही सुंदर सा झरना बह रहा यह--

लगता है कोई मेला लगा है यहां कोई प्रवचन चल रहे हैं।